यह एक जीम है और यहाँ पे बहोत सारी मशीन रखी हुई है मशीन मे यहाँ पे--

और यहाँ स्टेज पर बैठे हुए दोनों हाथों को दोनों तरफ किए हुए कुछ परफ़ॉर्म कर रही है कोई डान्स डान्स कर रही है और यहाँ पे।

इनके डिपार्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है कुछ यहाँ पे बोर्ड लगे हुए है।

निकल रही है यहाँ पे अ उन्होंने यहाँ पे नीले रंग की टोपी वगैरा पहन रखी है कुछ लोगों ने कुछ यहाँ पे लेडीजे भी खड़ी है कुछ यहाँ पे व्यक्ति आदमी भी खड़े है।

और यहाँ पे कुछ ऊपर सजा हुआ है यह चर्च और यह पीले कलर से पुता हुआ है इसका रेड लाल गेट बना हुआ है।